और पीछे बहुत बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और पीछे फेवीक्विक की पॉकेट दिखाई दे रही है।

और ग्रेनाइट के बगल में कागज का कुछ टुकड़ा भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है और उनको प्लास्टिक से ढका गया है।